यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है साइड में--

काफी सारे पेड़-पौधे हैं यहां बिल्डिंग में कुछियां लगी हुई है।

यहां पर एक कैफे है जिसमें टेबल और कुर्सी पड़ी हुई है जिसमें एक लड़की बैठी है जिसने--

यहां पर एक शॉपिंग मॉल है जिसमें काफी सारी लाइट्स जल रही हैं यहां पर काफी सारे कपड़े टंगे हुए हैं यहां पर--

यहां पर एक ग्रीन कलर की बाल्टी रखी हुई है यहां पर डस्टबिन रखा हुआ है यहां पर एक लड़का जा रहा है जो की फोन पर बात कर रहा है जिसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी है।

यहां पर एक गौशाला है इसमें काफी सारी गाय बंधी हुई हैं।

यहां पर एक लेडी बैठी हुई है जिन्होंने सूट पहन रखा है यहां पर--

यहां पर कुछ एक लैपटॉप रखा हुआ है एक फोन रखा हुआ है यहां पर एक पिंक कलर की बोतल रखी हुई है यहां पर एक झोला रखा हुआ है यहां पर कुछ नोट्स रखे हुए हैं।

शर्ट पहन रखी है वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ जिसने सीमेंट कलर की शर्ट पहन रखी यहां पे एक ग्रीन कलर की चेयर पड़ी हुई है।

ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहन रखी है यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है।

टी-शर्ट पेन रखी हुई है यहां पर टेबल पर कुछ ग्लास और बॉटल रखी हुई है।

यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने पिंक कलर की शर्ट पेहनी है यहां पर एक रेड कलर की डलिया रखी हुई है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है यहां पर कुछ टेबल और चेयर पड़ी हुई हैं यहां--